डिस्पोजल दिखाई दे रहे हैं चाय वाले डिस्पोजल दिखाई दे रहे हैं एक वहां पे बोतल केन वाली बोतल भी दिखाई दे रही है और --

एक आदमी में माक्स लाल माक्स वाला कुछ हाथ में ले रखा है और एक लाल डब्बा भी पड़ा हुआ है।

गर्दन में माला भी टंगी हुई है तीन चार सोफे भी पड़े हुए हैं एक बेड भी है बेड के ऊपर बेडशीट भी है और दो --

हेलो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों एक होटल दिख रही है सामने बहुत बड़ी औ उसका नाम है आनंद होटल एंड रेस्टोरेंट ।

हेलो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर हमें दो छतरी दिखाई दे रही है और ये पंखा भी दिखाई दे रहा है।

हेलो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर दो ट्रेन दिखाई दे रही है नागौर में और बहुत सारे --

इनके बीच में एक पटरी खाली भी पड़ी हुई है दो पटरी पर तो ट्रेन भी चल रही है और--

एक पटरी भी जा रही है और उधर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग भी है और ये पानी पीने वाला कुछ भी है यहां पर है एक मैडम पानी पी रही है और यहां पर ये लाइट भी है बहोत बड़ी।

हेलो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर चार आ पांच आदमी भी खड़े हुए हैं दो मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है और--

हेलो दोस्तों यहां पर ये नोका तहसील है जहां पर बहुत बड़ी एक रेलवे स्टेशन भी है और बहुत --

एवं रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है और यहां पर अंदर एक आदमी भी बैठा हुआ है और कुछ मशीनें भी पड़ी हुई हैं और बाहर बाल्टी भी पड़ी हुई है और एक टेबल भी पड़ी हुई है और --

कुछ छोटे छोटे डब्बियां भी पड़ी हुई हैं।